यहां पर घर ढलाई करने का कार्य चल रहा है यहां पर चारो तरफ रड लगाए गए है।

यहाँ पर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ फोर व्हीलर टू व्हीलर जैसी गाड़ी मिलती हैं ।

यह एक फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री में बहुत मजदूर काम करते हैं।

और क्रीम व्रिम लगा कर मसाज करते हैं।

इश्यू होने पर यहां पे आकर लोग वेलफेयर लेते है यानि कि सरकार द्वारा से इलाज कराते है।

यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के फेशियल किए जाते हैं और सभी के अलग-अलग रेट में फेशियल होता है।

यह मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है।